यहाँ पे देख रहें हैं जो की बर्फी छेना रसगुल्ला का दुकान है।

अलमारी के ऊपर में तरह-तरह का लाइट लगा है तरह तरह का बल्ब है।

इस फील्ड में बहुत सारे पेड़-पौधे हइये है और इसमें देखिये घर है। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे पेड़-पौधे हैं आसमान है नीला है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जननी लेडीज कुर्सी-टेबल पे बैठे हैं लाइट का भी व्यवस्था है।

और यहाँ देख रहे है जो की --

और ये बाउंड्री जो की तार से तार से खींचा है।